यहाँ पर हमे एक बैंक बनी हुई दिखाई दे रही है जिसकी दीवार अ ब्लू कलर की प्रिंट और सफेद कलर की एच डी एफ सी बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वँहाँ पर दरवाजे के पास कुछ व्यक्ति खड़े हुआ दिखाई दे रहे है। कुछ भी

यहाँ पर हमें एक मकान बनते हुए दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर खंभे से लगे हुए दिखाई दे रहे है और जो कि अभी पूरी तरह से बना नही है और वहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठें हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्ति लेटे हुए दिखाई दे रहा है जो कि पूरी तरह से--

साइड एक लाइन में बैठी हुई है और वहा पर कुछ बच्चे भी एक साइड में बैठे हुए हैं जो कि अपनी ड्राइंग --